इस तस्वीर में मुझे पहाड़ का छेत्र दिख रहा है पहाड़ी छेत्र दिख रहा है। यहाँ पे खूब सारे पेड़-पौधे दिख रहें हैं और चट्टानें दिख रही है चट्टानी छेत्र दिख रहा है यहाँ।

खूब गाड़ी मोटर आरे जा रही है और आस-पास खूब सारे घर और एक मंदिर भी यहाँ पर दिख रहा है।

इस तस्‍वीर में मुझे खूब सारी चट्टानें दिख रही हैं जहां से ऊपर से आता हुआ पानी यहां चट्टानों से नीचे गिरता-गिरता नीचे की ओर जा रहा है और इन चट्टानों के आस-पास खूब हरियाली भी दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे खराब पड़ी हुई कार दिखाई दे रही है जो कार है उसके आगे के हिस्से को खोला गया है पूरी तरह से कार मुझे खठहरा खराब हुई दिखाई दे रही है।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

यह तस्वीर एक साड़ियों की शॉप की दुकान है जहाँ पर अ कुछ साड़ियाँ दिखाई जा रही है।